तस्बीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमे खुला आसमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमे बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग काफी पुरानी दिखाई दे रही है।

तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बच्चा खड़ा दिखाई दे रहा है जिसने जूता पहना दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमें गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें कमल के दिखाई दे रहे हैं। एक --

पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं यहाँं पर हमें रोड दिखाई दे रहे हैं इस जगह टाइल्स लगी दिखाई दे रहे है। यहाँं पर हमें गार्डन में कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँं पर हमें झाड़ू पोंछ भी दिखाइ --

इस तस्वीर मे हम देख सकते हैं यहां पर हमें बहोत सारे लोग अ नहाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें नदी का किनारा दिखाई दे रहा है। यहां पे हमे बोट दिखाई दे रही है जो कि लकड़ी के दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें ऊपर झण्डा दिखाई दे रहा है। यहां --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं| यहाँ पर हमें मार्शल आर्ट्स करते दिखाई दे रहे हैं| इन लोगों ने सफ़ेद कलर की शर्ट पे-पेहनी रखी हैं पेंट पहेन रखीं हैं यहाँ पर हमें --

यहाँ पर हमें एक आदमी फोन पे बात करते दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें सिढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर हमें लाल रंग की कुर्सियाँ भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर हमें लाइट फिटिंग करने के लिए तार भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमें बम्बू भी दिखाई दे रहे हैं।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

झाड़ और पौधे दिखाई दे रहे है। नीचे हमे मिट्टी दिखाई दे रही है। यहां पर हमे बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है। यहां पर हमे खुला आसमान दिखाई दे रहा है। बिल्ले खंभे दिखाई दे रहे है। पोल दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे हम बिल्डिंग के ऊपर हमे प प काली कलर की पानी की टंकी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम भी चलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खुला आसमान भी दिखाई --

मोबाईल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बैग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो छत पर लाइटरिंग लगी दिखाई दे रही है। ऐसी लगी दिखाई दे रही। यहाँ पे दुकान दिखाई दे रही है। यहाँ पर गेट दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमें --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहां पर में चर्च का सिम्बोल दिखाई दे रहा है| उसके नीचे हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है| इसकी हमें --

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहां पर हमें चर्च की बिल्डिंग दिखाई दे रही है | उसके ऊपर चर्च का सिम्बोल दिखाई दे रहा है | यहां पर हमें खुला आसमान दिखाई दे रहा --

कुछ झाड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमे अ ब्लू बोर्ड के ऊपर लाल अक्षरों में चर्च ऑफ़ लिखा दिखाई दे रहा है यहां पर।